विहार शिमला टू में ही है।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

और यहां पर संध्या का समय है। थोड़ी थोड़ी सी मध्यम धूप भी दिखाई दे रही है।

जो कि जल रही हैं और इसके बाहर बहुत सारी गाड़ियां खड़ी हुई हैं।

और ये एक पहाड़ में बनाई गई है ये बिल्डिंग ।

और इस बिल्डिंग में बहुत सारे शीशे भी लगे हुए हैं।

और डाबे पे चाय वगैरह खाना वगैरह बनाया जाता है जो कि ग्राहकों को खाने के लिए होता है।

यहां पे हर तरह का ब्रेकफास्ट और लंच मिलता है।

और इस ढाबे के बाहर एक बोर्ड है जहां पे संजू ढाबा लिखा है प्लस वहां पे कांटेक्ट नंबर --

ये एक कैफे का बाहर का दृश्य है।

यहां पे कितनी प्यारी-प्यारी कुर्सियां रखी गई हैं।

जिसका नाम रोहणी इंटरप्राइजेज है। शीतल और होंडा लिखा हुआ है। ये रोहणी इंटरप्राइजेज --

ये एक संध्या के समय का दृश्य है।

वे एक टांग पे खड़े होकर योगा कर रहे हैं।

और नीचे योगा के मैट बिछे हुए हैं।

और ये दुकान के अंदर लाइट्स लगी हुई हैं।

जिसका नाम कीटोपिया है।

और साथ में यहां पे कुछ बनाया भी गया हैं।

जैसे छोटे-छोटे साइकिल हैं बच्चों के लिए--

और इस विशाल दरवाजे को गुबारों से सजाया गया है जो कि--